योगा करते हुए दिखाई दे रहे--

हवेली के बाहर हमें पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर हमें एक पैलेस --

जहां पर हमें बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें एक बहुत बड़ी नदी की दिखाई दे --

पार्किंग की नजर आ रही है।

की दखाई दे रही है सलून --

रूम की दिखाई दे रही- -